चित्र एक गाड़ी का है गाड़ी में बड़े-बड़े म्यूजिक इक्यूपमेंट लगे हुए हैं।

बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए हैं।

चित्र एक हॉस्पिटल का है हॉस्पिटल में एक लाल बोर्ड लगा हुआ है।

नीचे की कार खड़ी हुई है।

लाल रंग की सीढ़ियां बनी हुई है।

गाड़ियां खड़ी हुई हं --

नीचे पेड़ नजर आ रहे हैं ।

पीछे एक बाल्टी रखी हुई है।

दिवारे सफेद रंग की पुती हुई है।

खेत में बहुत सारे हिरन दिख रहे हैं।

एक छोटा सा फ्लावर पाट रखा हुआ है।

बाहर एक लड़का खड़ा हुआ है।

दो टेबल लगी हुई हैं।

सफेद रंग के सोंफे रखे हुए हैं।

इसका नाम नेशनल बाइक केयर है।

चित्र एक सलून का है।

प्रोजेक्ट छोटे छोटे हिस्सों में बना रखा हुआ है।

वॉश बेसिन लगा हुआ है।

चित्र में बहुत सारे लड़के दिख रहे हैं।

ट्रेन सफेद रंग का लगा हुआ है ।

लोगों ने सफेद रंग की टोपी लगाई हुई है।

एक एलोवेरा का पेड़ लगा हुआ है।

चित्र एक मंदिर का है ।

चित्र में एक दुकान दिख रही है।

दुकान ग्रिज और ऑयल की है।

साइड में घर बने हुए हैं।

चित्र एक सेमिनार हॉल का हैं।

कुर्सियों पे सफेद रंग का पर्दा बना हुआ है गोल्डन रंग का रिबन बना हुआ है।

इस बच्चे ने लाल रंग के कपड़े पहने हुए हैं।

दो बड़े-बड़े गमले बने हुए हैं।

चित्र एक बड़े से हाल का है ।